meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
मुझे न्यूयॉर्क में jeson से एक imail mail और उसने अभीअभी मेरे द्वारा triptychs शुरू करने से पहले इसे करने के विभिन्न तरीके खोजने के लिए triptychs के बारे में दिखाना बंद कर दिया है
और उसने layer mask का प्रयोग करके एक भिन्न तरीके के बारे में पता लगाया
और मुझे लगता है कि मुझे आपको इस tutorial में वह दिखाना चाहिए
मैं आपको वह image नहीं दिखा सकता जो jeson ने triptychs करने के लिए प्रयोग की थी क्योंकि उसने उन images का प्रयोग किया था जो मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं अतः मैं उनका प्रयोग नहीं कर सकता he
triptychs करने के लिए layer mask का प्रयोग करना बहुत आसान है और मैंने एक layer mask का प्रयोग करने के बारे में उसके तरीके को थोड़ा संशोधित किया है
मुझे आश्चर्य है कि मेरे दिमाग में यह विचार क्यों नहीं आया
और मैं यहाँ इन तीन shots के साथ एक triptych करना चाहता हूँ
मैं इस image को बायीं ओर रखना चाहता हूँ इस दूसरी image को मध्य में और इसे दायीं ओर रखना चाहता हूँ
मैं इन वर्गाकार frames को कुछ इस तरह बदलना चाहता हूँ जो इस image के अनुकूल हो
हम देखेंगे कि यह कैसे कार्य करता है
tab मैं यहाँ इन images के साथ triptychs बनाना शुरू कर सकता हूँ और मैं my टूल बॉक्स window को foreground में लाने के लिए टैब दबाता हूँ
फ़ाइल पर click करें और new select करें एक new image बनाने के लिए और हमें विड्थ के लिए 3400 और height के लिए 1200 की default value प्राप्त होती है
अतः मेरे पास 1000 by 1000 की तीन images हैं और उनके बीच 100 pixels का border है
देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है
इस image को नई image में शामिल करने के लिए मैं toolbox से इस image की background layer को यहाँ my new image पर drag करता हूँ और आपको यहाँ background copy प्राप्त होती है
यह मेरी सबसे बाईं ओर वाली image है अतः मैं इसका नाम बदलकर left left कर देता हूँ और मैं typing के बाद return/enter बटन दबाता हूँ
अतः इस image को बायीं ओर होना चाहिए
और अगली image दायीं ओर होनी चाहिए अतः मैं उसी तरह अपनी image को खींचता हूँ और तदनुसार इसे right right name देता हूँ
और यह तीसरी image है और यह मेरी central window होगी अतः मैं इस image को नई image पर खींचता हूँ और इस layer का नाम बदलकर center center कर देता हूँ
मैंने right और central layers अदृश्य कर दीं हैं और अब मैं left layer को थोड़ा नीचे scale करना चाहता हूँ और जब मैं इसे थोड़ा मानो 10% नीचे zoom करता हूँ आप इस layer के borders देख सकते हैं और अब image का पूरा frame देखा जा सकता है
और अब मैं move tool का चयन करता move ताकि मैं इस image को खिसका सकता move और थोड़ा समायोजित कर सकता move
यह image खिसक नहीं रही है क्योंकि मैंने center layer को selected किया है
अतः अब मैं left layer का चयन करता हूँ और इसे उस bottle की स्थिति के अनुसार खिसकाता हूँ
मैं इस layer को थोड़ा छोटा करना चाहता choose और इसलिए मैं tool बॉक्स से scale tool का चयन करता choose और tool info पर जाता choose और aspect ratio aspect ratio पर click करता choose और प्रिव्यू में मैं image option का चयन करता choose
और अब मैं layer में click करता हूँ और info window को एक ओर खिसकाता हूँ और इसे एक कोने से कम करता हूँ
मुझे लगता है अधिक या थोड़ा कम
मैं इस image को पकड़ सकता हूँ और मैं इसे वहां रख सकता हूँ जहाँ मैं इसे रखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ दिशानिर्देश रखने चाहिए
अतः मैं इस image को 100% zoom करता हूँ और ऊपरी बाएं किनारे पर जाते हैं
अतः मैं यहाँ निर्देशों के लिए rulers को नीचे खींचता हूँ
मुझे आश्चर्य है कि मैं पैमाने को क्यों नहीं खिसका पाया और यहाँ एक विकल्प move the active layer है इसका चयन करके मैं active layer को move कर सकता हूँ
लेयरों को सुरक्षित करना एक अच्छा विकल्प है और मैं frame के आकार के रूप में दायीं ओर 100 चुनता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ और मैं इसे 1100 set करता हूँ और दायीं ओर मैं इसे 1100 पर set करता हूँ
यह मेरी image के लिए frame है
shift + ctrl + e मुझे पूरी image प्रदान करता है और अब मैं active layer विकल्प का चयन करता हूँ
और zoom ratio ratio में मैं 10% चुनता हूँ
मुझे लगता है कि मुझे 13% चुनना चाहिए और यह पर्याप्त है
मैं scale tool पर click करता हूँ और aspect ratio aspect ratio को बनाये रखता हूँ और इस scale window को frame के बाहर खींचें
अब मैं इस image को scale करता हूँ
अब मेरे पास यह देखने के लिए frame है कि मैं इस image को कहाँ लगाना चाहता हूँ
और मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए क्योंकि मैं इस image में यहाँ कांच का shades रखना चाहता हूँ
अब मैं scale पर click करता हूँ और मुझे मेरी मापित image प्राप्त हो जाती है
इस image के चारों ओर frame प्राप्त करने के लिए मैंने सिर्फ एक layer mask लगाया है
मैंने अपने layer mask को black जो full transparency है बनाया है
और सिर्फ add पर click करें
अतः अब मैं यहाँ borders के अन्दर एक आयत का चयन करता हूँ और आयत को white कलर से भरता हूँ
मैं यहाँ white colour भरता हूँ और आप देख सकते हैं कि bottle दिखाई देने लगती है और यहाँ frame को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ इसमें zoom करता हूँ
और मैं layer mask पर अनियमित strokes के साथ white कलर से paint करूँगा
यह करने के लिए मैं brush tool का चयन करता हूँ यहाँ dialog पर जाएँ और मैं यहाँ painting के लिए एक soft brush का चयन करता हूँ
painting से पहले मुझे shift + ctrl + a दबाकर मेरे selection को deselect करना होगा और अब मैं white कलर से पेंट करना शुरू कर सकता हूँ
मैं white color का चयन कर लेता हूँ
अब मैं यहाँ चारों ओर white color से paint करता हूँ और आप देखते हैं layer mask पर white color से paint करते समय भी मैं नीचे image को प्रकट कर रहा हूँ
और painting अनियमित है किन्तु यह ठीक है
अब मैं एक अलग brush selecting कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह बेहतर है
मुझे एक अस्पष्ट कोना fuzzy corner प्राप्त होता है
मुझे image को 100% zoom करना चाहिए जिससे आप इसे देख सकते हैं
मुझे यहाँ एक प्रकार का अस्पष्ट fuzzy border प्राप्त होता है और मैं इसके ऊपर दोहरी painting करके एक क्षण में इसे थोड़ा और अस्पष्ट fuzzy बनाउंगा
और अब आप देख सकते हैं कि border थोड़ा और अनियमित हो जाता है
शायद यहाँ यह सही tool नहीं है किन्तु आप विभिन्न tools प्रयोग कर सकते हैं और अब मैं इस image को अधिक sharpen करना चाहता हूँ
आप check सकते हैं कि मैं अभी भी layer mask पर कार्य कर रहा you
आप यहाँ इसकी जांच कर सकते हैं
यहाँ layer mask को सफ़ेद रंग के साथ selected किया गया है
अतः filters blur gaussian blur पर click करें और मैं यहाँ high high blur count चुनता हूँ और मुझे लगता है कि यह सही है
और अब मेरे पास इसके चारों ओर एक वास्तविक अस्पष्ट border है
अतः पूरी image को देखते हैं shift + ctrl + e दबाएं
मेरे पास मेरे tryptychs का पहला भाग है और मैं उसी तरह अन्य को करता हूँ
मैंने अन्य images के साथ कार्य पूर्ण कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने rulers के ऊपर अधिक painted कर दिया है और मैं यहाँ भी वैसा ही कर सकता हूँ
अब मैं rulers हटाना चाहता हूँ और इसे करने के लिए now तरीका image image guides पर जाना है और यहाँ मैं सभी guides हटा सकता हूँ
और मैंने जाना कि मैं यहाँ एक new guide बना सकता हूँ और अंकीय रूप से स्थिति को select करते हैं
इस विकल्प की उपस्थिति आश्चर्यजनक है
gimp में इतने अधिक विकल्प हैं कि आप उन सभी को याद नहीं रख सकते
view view पर जाएँ और layer boundary को deselect करें
मैं इस bottle को कोने से थोड़ा और ऊपर रखना चाहता हूँ
मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी अधिक जगह है और यहाँ थोड़ी कम
मुझे लगता है कि दायीं और मध्य वाली image यहाँ दायें कोने पर हैं
किन्तु मुझे लगता है कि इस bottle को वहां ऊपर जाना चाहिए
अतः मैं full screen mode से बाहर जाउंगा
मैं मध्य और दायीं layer को deselect करता हूँ और बायीं layer पर केन्द्रित करता हूँ
अब मुझे निर्देश के लिए पैमानों की आवश्यकता है
अतः image guides new guide पर click करें और horizontal position में 100 type करें
पुनः image guides new guide पर जाएँ और vertical position में 100 select करें
और अब मैं my move tool को select करता move options पर जाएँ move the active layer का विकल्प चुनें और मैं यहाँ इसे सिर्फ ऊपर खिसकाता move
मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की है अतः मैं ctrl + z दबाकर इस step को अनडू undo करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं कि mask selected हो जाता है
मैं layer को खिसकाना चाहता हूँ
अतः अब मैं image को select करता हूँ और मैं सिर्फ इसे ऊपर खींचता हूँ और mask इसके साथ ही खिसक जाता है
मुझे mask को lock करने का कोई तरीका नहीं मिला किन्तु मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ
मैं layer mask को select करता हूँ और layer mask को पुनः यहाँ my corner पर वापस खींचता हूँ
मुझे लगता है कि यह अब बेहतर दिखाई पड़ता है
और अब इस image को न्यूयॉर्क में jeson की मदद से पूर्ण कर लिया गया है
नहीं यह image पूर्ण नहीं हुई है
मैं वह चीज़ सामान्यतः नहीं भूलता किन्तु मैं हमेशा भूलता हूँ जब मैं रिकार्ड कर रही होता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी image बनाने के अलावा बहुत the अन्य चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है
मैं पुनः इसे सेव करना भूल गया हूँ
इसे jaegermeister xcf नाम से xcf करें xcf में संपूर्ण layer जानकारी शामिल होती है और मैं web के लिए रीrescaling करने से संबंधित पूर्ण सामग्री को अलग करूँगा
इस फाइल के लिए show notes में आपको एक link मिलेगा meetthegimp @org पर और यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद